यहाँ पर यहाँ पर एक रेड कलर की पोस्टर लगी हुई है और सामने देखिए आपको एक स्टूल दिखाई देगा ग्रीन कलर की कारपेट बिछा हुआ है पंखे लगे हुए है ।

यहाँ पर देखिए बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है और यहाँ पर भीड़ है बहुत और यहाँ पर देखिये कटी गई है और यहाँ पर कुछ डमी मे कपड़े पहने हुए लगे हुए है ।

यहाँ पर देखे एक काउन्टर रखा हुआ है देखे कपड़े तय करके रखे है बच्चोंकी जैकेट है यहाँ पर कुछ पोस्टर लगी हुई है वॉल कलर व्हाइट है यहाँ पे ।